पास में कुछ कार के पोस्टर भी लगे हुए हैं आसपास हरियाली छाई हुई है।

यहां पूजा हो रही है।

और यहाँ कुछ लोग नाश्ता कर रहे है यहाँ बहोत सारे खाने पीने के सामान हैं।

यहां एक पर्दे भी लगे हुए हैं पर्दों का रंग सफेद है।

डब्बे भी रखे हुए हैं पीछे की तरफ बहोत सारी लकड़ियों के--

चर्च में सामने की तरफ फादर खड़े हुए हैं।

सिटिंग अरेंजमेंट भी है आसपास कुर्सियां व टेबल रखे हुए हैं।

एक कमरे में ए_टी_एम की मशीन हैं। वहां एक आदमी खड़ा है।